परचून की दुकान है यहाँ पे काफी सारे सामान मिलते है परचून के।

ये खाफी रंग बिरंगे बादल लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं।

बाहर से शीशे लगे हैं । आने जाने की सीढ़ियां बनी हुयी है साइड में गाड़ियां खड़ी हुई हैं येलो कलर लगा है बोहोत खुबसूरत लग रहा है ।

एक छोटा सा टापू दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रीन घास पेड़ पौधे बोहोत हरे भरे लगे हुए हैं। सामने हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो दिखाई दे रहे हैं और शाम का समय है। बोहोत खूबसूरत लग रहा है।

सामने पेड़ दिखाई दे रहे हैं घर हैं बादल हैं। यहां पे आप घूम सकते हैं। शुद्ध वातावरण है और घास भी लगी हुई है बोहत सारी।

मॉल बोहोत बड़ा मॉल है ये यहाँ पे आपको कलरफूल बाहर से ही दिखा दे रहा है बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में घास है रेलिंग है।

इसमें मोरम बालू सीमेंट वगैरह डालके एक बार में पानी डालके घुमाया जाता है काफी सारा मसाला एक बार में बनके तैयार होता है इसे मकानों में लगाया जाता है मसाला।